पीछे हरा भरा बहोत ही पेड़ है और बहोत ही अच्छा लग रहा है अनार का कलर का टी-शर्ट पहने हुए सफ़ेद जीन-जीन्स पहने हुए खड़ा है जो की बहोत ही अच्छा--

जैसे की आप देख देख रहे एक प्रधान का घर है चूँकि इसमें येलो कलर का अ बोर्ड लगा हुआ है छज्जे बहोत बड़ा डाक घर हैं जो की साइड मे एक पेन हैं।

ये मेरे को बहोत ही अच्छा दिख रहा है पीछे हरा-हरा घास है।

एक-आदमी लाल कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है एक आदमी लाल कलर का जींस पहना हुआ है एक आदमी लाल कलर का जो की बहोत ही मछवारे मछवारे है।

जैसे की आप देख रहे है एक सामने नीम का पत्ता सुबह-सुबह तोड़ रहे है साइड में एक बहोत बड़ा घर है उस-उस साइड में एक बहोत बड़ा घर है साइड में--

साइड में बहोत बड़ा-बड़ा पेड़ है जो की बहोत ही खूबसूरत हरा-भरा बहोत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है एक तालाब है जिसमे बहोत सारी मछलियाँ है जो बहोत --